ऐ बच्चे यहाँ पे फिसल रहें हैं और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे बड़े-बड़े घास हैं बड़े-बड़े खम्भे हैं बिजली के। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।